मुझे यहाँ पर चावल दिखाई दे रहे है दाल भी है पनीर भी है प्याज भी है ककड़ी की सब्जी भी ककड़ी भी है और शायद आलू की सब्जी भी है जो कि खाने में मुझे लगता है बहोत ही लजीज है।

शायद नही बंद ही है क्योंकि चीते को हम ऐसे खोल नही सकते क्योंकि वह हम पे अटैक कर सकता है।

मुझे यहा पर किसी स्टेशन का नजारा नजर आ रहा है जो कि किसी रेलवे स्टेशन के पास है यहाँ पर घर रेलवे स्टेशन के पास--